यहाँ एक नदी है। नदी में कुछ आदमी लेडीज स्नान करते हुए --

यह एक स्कूल है स्कूल के सामने एक आइस क्रीम गाड़ी दिखाई--